इस चित्र में हमें कुर्सी दिख रही है पंखा दिख रहा है लाइट दिख रही है।

इस चित्र में हमें मेहराबें दिख रही है अलमारियां दिख रही है।

दिख रहा है।

इस चित्र में हमे महल दिख रहा है पिलर दिख रही है।

सीढ़ी दिख रही है मेहराब दिख रहा है गुंम्बद दिख रहा है।